C में एक्सेप्शन हैंडलिंग के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखेंगे
हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग का रही हूँ उबन्टु ओएस वर्जन 1110 g कम्पाइलर वर्जन 461 अब एक्सेप्शन के परिचय के साथ शुरू करते हैं
एक्सेप्शन एक समस्या है जो प्रोग्राम के निष्पादन के समय उत्पन्न होती है
यह रन टाइम एरर है जिसका पता प्रोग्राम लगा सकता है
अब एक्सेप्शन हैंडलिंग पर जाते हैं
प्रोग्राम के निष्पादन के समय समस्याओं को दी गयी अनुक्रिया को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं
एक्सेप्शन हैंडलिंग निष्पादन को जारी रखने की अनुमति देता है
यह समस्या का पता लगाने में मदद करता है
और नियंत्रित तरीके से प्रोग्राम को ख़त्म करता है
अब एक्सेप्शन के प्रकार देखते हैं ट्राय कैच और थ्रो हम एरर प्रोन कोड को ट्राय ब्लॉक के अंदर रखते हैं
फिर इसे थ्रो उपयोग करके संचित किया जाता है
इसके बाद कैच स्टेटमेंट उपयोग करके इस एक्सेप्शन को पकड़ा जाता है
और फिर यह संसाधित होता है
ट्राय कैच और थ्रो के लिए रचनाक्रम है Throw ट्राय ब्लॉक और कैच ब्लॉक यहाँ हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं
थ्रो स्टेटमेंट ट्राय ब्लॉक्स के अंदर भी लिखा जा सकता है
हमारे पास एक से अधिक ट्राय कैच ब्लॉक्स हैं
अब एक्सेप्शन हैंडलिंग पर एक उदाहरण देखते हैं
मेरे पास कोड है मैं इसे खोलूंगी
ध्यान दें हमारा फाइलनेम exceptionसीपीप है
इस प्रोग्राम में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रयोग करके डिवाइड बाई ज़ीरो एरर हल करेंगे
अब पूरे कोड को देखते हैं
यह आईओस्ट्रीम हमारी हैडर फाइल है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
यहाँ हमारे पास आर्ग्यूमेंट इंट आ और इंट ब के साथ फंक्शन डिविजन है
फिर हम जांचते हैं कि ब 0 है या नहीं यदि ट्रू है तो हम डिविजन बाय ज़ेरो कंडीशन एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं
फंक्शन आ और ब का डिवीज़न रिटर्न करता है
यह हमारा मेन फंक्शन है
इसमें हमने इंटीजर वेरिएबल एक्स य और एक डबल वेरिएबल ज़ घोषित किये हैं
यहाँ हम एक्स और य की वैल्यू स्वीकार करते हैं
यह हमारा ट्राय ब्लॉक है
यहाँ हमने फंक्शन डिविजन कॉल किया है
और परिणाम को ज़ में संचित किया है
फिर हम ज़ की वैल्यू प्रिंट करते हैं
यह हमारा कैच ब्लॉक है
इसमें हम एक आर्गुमेंट एमएसजी कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह पास करते हैं
फिर हम एमएसजी प्रिंट करते हैं
और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं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
कम्पाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेस एक्सेप्शन डॉट सीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस ईएक्स एंटर दबाएं
टाइप करें डॉट स्लैश ईएक्स एंटर दबाएं
एक्स और य की वैल्यू एंटर करें
मैं 3 और 0 दूंगी
आउटपुट प्रदर्शित होता है डिविजन बाय ज़ेरो कंडीशन दोबारा कम्पाइल करते हैं
अप एरो की दो बार दबाएं
एंटर दबाएं
दोबारा अप एरो की दो बार दबाएं
एक्स और य की वैल्यू एंटर करें
मैं 8 और 2 दूंगी
आउटपुट 4 है
इस प्रकार ट्राय कैच और थ्रो ब्लॉक कार्य करते हैं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
अब अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने देखा एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राय कैच और थ्रो ब्लॉक्स
एक नियत कार्य में कर्मचारियों की ऐज प्रदर्शित करें
एक एक्सेप्शन थ्रो करें यह जांचने के लिए कि ऐज 15 से कम नहीं है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
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालोँ को प्रमाणपत्र देते हैं
अधिक जानकारी कर लिए कृपया contactspoken tutorialorg को लिखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद